ये फतेह का बोर्ड लगा हुआ हैं।

कॉफी भीड़ लगी हुई है।

काफी चेयर्स भी पड़ी है।

शॉप में काफी पेंस के पैकेट --

काफी सारे मूर्तियां हैं।

फूलों के माला से सजाया हुआ है।

आपके अंदर खड़े हैं बा--

ये गौशाला की तस्वीर है।

सामने दो चेयर्स भी रखी हुई है।

ये काफी बॉक्सेस पड़े हैं।

ये काफी सारे रेड ब्राउन कलर की मशीन्स हैं।

ये पैलेस की तस्वीर है।